यह एक होटल है। हम लोग होटलों में अक्सर कहीं घूमने जाते हैं तो इसलिए होटलों में रुकते हैं और होटलों में रुकने के लिए हमें अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है।

यह किसी पेट्रोल पंप का फ़ोटो है। हम जानते हैं पेट्रोल पंप पर हम लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं।